ये एक जिम है जिम के अंदर दो ट्रेड्मिल रखी हुई है जिम के फर्श पर एक डंबल्स पड़ा हुआ हैं।

ये एक कॉलेज है कॉलेज के बाहर बड़ा सारा दरवाजा लगा हुआ है बाउंड्री पर काफी कपड़े सुख रहे है।

--और वो पटिये की कर रहा है और उसके कंधो पर ब्लू कलर का बेग टंगा हुआ है।